गधों के पीछे एक बैरिकेडिंग भी दिख रही है।

कुछ गाड़ियां भी पेट्रोल पंप के अंदर नजर आ रही है।

पेट्रोल पंप के सामने एक रास्ता भी है।

बैनर के ऊपर सुखदेव पैलेस लिखा हुआ है।

ट्रक के दूसरी तरफ एक बाउंड्री है।

बाउंड्री के उधर कुछ पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं।

हर कंपार्टमेंट के सामने एक कुर्सी भी पड़ी हुई है।

वहीं पीछे गौतम बुद्ध की चेहरे की आकृति भी रखी हुई है।

नाई की दुकान में कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं।

सामने की तरफ एक व्यक्ति हुडी पहने हुए खड़ा है।

बेकरी शॉप को गुब्बारों व झालरों से सजाया गया है।

कुछ लोग सिनेमा हॉल के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

इमारत के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

रोड के बीचों बीच में एक डिवाइडर भी है।

इस फोटो में किसी स्टेज का दृश्य दिखाया गया है।

स्टेज पर कुछ लड़कियां नृत्य करती हुई दिख रही है।

पीछे की तरफ पोस्टर लगे हुए है।

अमने की तरफ कुछ घंटे लगे दिख रहे हैं।

नदी के सामने की तरफ एक पत्थर की आकृति दिखाई गई है।

सामने की दीवार पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है।

इमारत के सामने कुछ लोग बैठकर धरना दे रहे हैं।

इस फोटो में किसी कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया गया है।